जिसके अंदर कुछ बॉक्स बने हुए है बॉक्स के अंदर से--

मूर्ति के आगे एक बड़ा सारा घर के अंदर--

जाने वाला गेट बनाया हुआ है और अंदर बाहर से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

और उसके पास में एक दो छोटे रखे हुए हैं जिसमें भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई है और नीचे कुछ --

सामान खोद कर बाहर निकाल रहा है जो टूटा फूटी वह जगह उसको सही करने के लिए मशीन का सहायता ले रहा है।

कुछ लिखा हुआ है और ये एक पूज्य का ब्रांड है ये पूज्य का नमकीन का ब्रांड है।

और इसका नाम जे_सी_बी है और इसके आगे कुछ मजूर खड़े हुए दिगाई दे रहे जिस सभी लेबर के --

यहां सामने एक बीच में लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और लड़के के पीछे एक बस जा रही है।

यहां सामने एक बड़ा सारा शॉप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बेकरी --

यह एक सामने बड़ा सारा श्री जैन पब्लिक स्कूल के नाम से रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है और पीछे--